ये बहुत बड़ा सा एक हॉल है।

यह लंबी एक कली जैसा है।

काफी लाइटें भी जल रही हैं।

हरे रंग की जाली बनी हुई है।

जमीन पर मिट्टी है और घास लगी हुई है।

बीच में एक हरा पौधा लगा है।

उस पर सफेद रंग की चादर बिछी हुई है।

ये चित्र में एक गाड़ी खड़ी है।

जिसके बाहर लाल रंग के--

ये एक अस्पताल की तस्वीर है।

कांच के दरवाजे और खिड़कियां लगे हैं।